यहाँ पर एक आदमी और उसका बेटा पुल के नीचे नदी में खड़े हुए हैं दोनों यहाँ पर नदी में पानी में पैर रखे-रखे हुए पानी में खड़े हुए दिखई दे रहे हैं।

यहाँ पर एक घर दिखया गया है घर का कार्य पूर्ण रूप से सम्पन नहीं हुआ है। घर के मुख्या द्वार के सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनमें से एक व्यक्ति अपने मोबाईल पर बात कर रहा है तथा दूसरा उसके बगल में शांत बैठा हुआ है।

यहाँ पर एक मैदान और मैदान के बगल में नदी बहा रही है नदी में छोटे छोटे पौधे भी उगे हैं नदी के किनारे तीन नाव खड़ी हुई हैं जिस पर की कोई भी व्यक्ति नहीं बैठा है।

यहाँ पर एक पुल तथा पुल के नीचे मौजूद नदी दिखाई गई है नदी में कई सारे व्यक्ति मौजूद हैं जो कि तस्वीर लेने का कार्य कर रहें हैं।